खंडर टाइप दिखाई दे रहा है।

ये मेरे सामने एक सूखी झील दिखाई दे रही है।

एलोवोरा की गुफाएं दिखाई दे रही हैं और इसमें--

ये सामने कुछ औरतें और जेंट्स योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये--

अपना अ मुंह ऊपर की ओर उठाए हुए हैं इन्होंने नीचे अपने बैठने के लिए कर्टन बिछाए हुए हैं।

है और उल्लू करी हरी घास पर चल रहा--

उल्लू का कलर नीला है।

गेट दिखाई दे रहा है जो की लोहे का है।

मेरे सामने कपड़ों का शोरूम दिखाई--

मेरे सामने राज सरा भारती पब्लिक स्कूल --

यहां पर बहुत सारे बुक रखी--

ई_सी_ई का लोगो भी लगा है।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

साइड में येलो कलर की--

ऑफिस में बहुत सारी कुर्सीया भी डली हुई--

हैं और एक आदमी स्कूटी लिए भी खड़ा--